उसी हिस्से में कांच की दीवार बना रखी है आसमान दिख रहा है।

इस फोटो मे बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक जगह पोस्टर लगा हुआ है जो धूम्रपान ना करने की सलाह देता है।

यह पर्वतों के सुंदर घाटे का नजारा है एक व्यक्ति पतीले में कुछ बना रहा है।

पास में पानी की बॉटल रखी हुई है आसमान दिख रहा है हरियाली बहुत है।

दो पहिया साधन जा रहे हैं एक गाड़ी खड़ी है रोड के उसे तरफ बड़ी बिल्डिंग हैं।

सामने कुछ दो पहिया बाइक भी दिख रही है बाइक जाने का रास्ता भी दिख रहा है।

यह किसी ऑफिस वगैरा का नजारा है एक बच्चा भी दिख रहा है।